यहां पर मुझे बहोत सारी लाइटस् भी न--

पर मुझे बहोत सारी कॉस्मेटिक चीजे भी दिख रही है और यहां पर बहोत सारे कल्चर्स में रखे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा हॉल दिख--

यहां पर मुझे एक बहोत सुंदर सा झूला भी नजर--

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है जहां पर मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप दिख रही हैं।

भी दिख रहे हैं जो की इधर उधर चल रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा सा एरिया दिख रहा है जहां पर मुझे बहोत सारे लोग दिख र--

यहां पर मुझे बहुत सारे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स भी दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख--

यहां एक सैलून है यहां पर बहोत सारी कॉस्मेटिक्स चीजे भी रखी है।